सड़क की साइड में छोटी-छोटी गिट्टियां रखी गई है बहुत सारा--

मेडिकल शॉप है और यहां पे बहुत तरह की--

यहां पे सामान भी है बहुत से--

तृप्ति रेस्टोरेंट हैं आप देख सकते हो।

हेलो गाइस आप देख सकते हो यहां एक ऑफिस है ऑफिस में कंप्यूटर रखा हुआ है।

यहां पे बहुत अच्छा डेकोरेट किया गया है।

यह रेस्टोरेंट का हॉल लग रहा है यहां बहुत से लोग हैं।

ऊपर पहाड़ियों पर बहुत सारे सारे पेड़ लगे हुए हैं।

कैटरिंग भी चालू हुआ है और बिल्डिंग का पिलर भी बन रहा है।

और पानी एकदम शांत तरीके से है।

और काफी सारे बोर्ड भी लगे हुए हैं।

ये बहुत ही प्राचीन शिव जी की मंदिर है वाइट कलर है जिसका--

नीचे पत्थर लगा हुआ है और यहां पे पेड़ है बहुत सारे।

वाह क्या टेस्ट है काश हमको भी मिल जाए--

और पहाड़ बहुत सारा बहुत अच्छा ही नजारा है पहाड़ का--

पहाड़ी लग गए है यहां पे कुछ छोटे-छोटे पौधे हैं बड़े पौधे भी हैं।

कुछ लेडीज है कुछ जेंट्स है बच्चे भी है यहां पे घूमने आए हुए हैं।

और बहुत से झालर भी है यहां पे।

यहाँ पे ऊपर मे हरे कलर से छाया हुआ है। लकडे का डिजाइन दिया गया है।

इसको डेकोरेट किया गया है आप देख सकते हो यहां आपका लाइट ऐसा लगा हुआ है जैसे कि इसके ऊपर छत की डिजाइन पूरा कलरफुल आ रही है यहां पे--

और जिसके सामने लिखा भी है कॉलेज ऑफ एजुकेशन --

पियोनो है माइक है ड्रम है ढोलक है बहुत सी चीजें हैं यहां पे रखी गई है।